एक दुकान दिखाई दे रही हैं ।

जहाँ पर सामने की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

और एक किताब भी दिखाई दे रही है एक बड़ा मोबाइल भी दिख रहा है।

और माताजी का मंदिर है यहाँ पर दो मूर्तियाँ बैठी हुई नजर आ रही हैं ।

एक गेट दिखाई दे रहा हैं ।

और नीचे की तरफ छोटे -छोटे पौधे लाइन समेत लगे हुए --

अ जहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ हैं ।

बोर्ड लगा हुआ है नीचे भी बोर्ड लगा है।

सामने की तरफ बहोत अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं ।

सामने की तरफ एक काले कलर की कुर्सी बनी है टाइल्स की --